इस प्रकार दिखाई दे रहा है।

यहां पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है।